नमस्कार बेसिक पह्प ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे एचो फंक्शन को प्रयोग करें और कैसे टैग्स सेट अप करें
जो भी एचटीएमएल से परिचित हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर पेज को प्रारंभ और अंत करने के लिए एचटीएमएल टैग्स होते हैं
यह एचटीएमएल पेज में महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आपके पास एचटीएमएल एक्सटेंशन है तब तक ठीक है
लेकिन पह्प में आपको टैग्स की आवश्यकता होती है यह प्रारंभ और अंत करता है
यह मूल रूप से इसके लिए मानक चिन्ह है
जबकि हमारा विषय इसके बीच में होगा
यहाँ पर मैंने पहले से ही मेरी फाइल को helloworldपह्प से सेव कर लिया है
तो चलिए इसको सेव करते है और एक नज़र यहाँ डालें
अभी इस पेज पर कुछ नहीं है लेकिन हमें हमारे पेज का सेटअप मिल गया है
यह बिलकुल ठीक है
एचो फंक्शन इस प्रकार काम करता है हमने एचो लिया है हमने कुछ डबल क्वोट्स लिए हैं और हमारे पास एक लाइन टर्मिनेटर है जो कि अर्धविराम चिन्ह है
और हमारी विषय वस्तु इसके बीच में होगी
चलिए इसे सेव करें और रिफ्रेश करें
और हमने कर लिया
हाँ तो आप कर सकते है मुझे ये बहुत उपयोगी लगता है एचो फंक्शन को इस प्रकार लिखें
क्योंकि जब आप एक एचटीएमएल कोड को एचो फंक्शन के भीतर रखेंगे यह बिट्स लाइन ब्रेक यानि पंक्ति विराम नहीं दर्शाएँगीआपको यह बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक एचटीएमएल नहीं सीखी है तो मैं कम से कम इसके बेसिक्स सीखने कि सलाह देती हूँ क्योंकि हम इसका भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए आपको खुद का एचटीएमएल जोड़ना होगा यह लाइन ब्रेक के लिए और फिर नयी लाइन हम इसे रिफ्रेश करते है और हमें यह मिला
हमारा एचटीएमएल सम्मिलित हो चुका है
अच्छा आपकी जानकारी के लिए यह एक चीज़ है जिसे बहुत से लोग रन करते हैं इमेज सोर्स इक्वल्स और आपकी फाइल यहाँ आती है
फिलहाल हमारे पास एचो है
यह दर्शाता है कि हम हमारा आउटपुट शुरू करने जा रहें हैं और यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं
हम यहाँ समाप्त नहीं कर रहें160 हम यहाँ समाप्त करेंगे
तो इसकी जगह हमें अवतरण चिह्न की ज़रूरत होगी
मूलतः यह हमें इमेज दिखाएगा
यहाँ पर कोई फाइल नहीं है लेकिन आपको चित्र मिलेगा
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा अगर हम इसे रखते है और फिर इसी के साथ मैं यह ट्यूटोरियल समाप्त करुँगा
हाँ हमें पारसे एरर मिली है
जो यह दर्शाएगा की हम यहाँ तक आ रहे हैं इसके बाद हमें एक अर्धविराम की आवश्यकता होगी
लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है
तो इन्हें अवतरण चिह्न ही रखते है
आशा है कि आपने सीखने का आनन्द लिया
यह स्क्रिप्ट रवि कुमार द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ
धन्यवाद